ये एक ब्रिटिश जमाने की मूर्ति लगे हुए हैं यहाँ पर और यहाँ रंग-बिरंगी दीवारों में पुतले बने हुए हैं।

ये तस्वीर मे सामने हरे-भरे द्रफत है उसमे लाल-लाल फूल लगे हुए है ।